वहाँ पे एक बोर खड़ा हुआ है साइड से बहुत सारे लम्बे-लम्बे बड़े-बड़े गज दिख रहें हैं जमीन मट्टी का दिख रहा है।

ये एक स्टेज बना हुआ है यहाँ पे बहुत सारे फूल है रेड कलर के फूल येलो कलर के फूल व्हाइट कलर के फूल है।

ये एक केक है जो कि ब्लैक कलर का गोल शेप में बना हुआ है और इसके ऊपर बहुत सारी चीजे है ब्लैक कलर की क्रीम वाइज़ बिस्कुट है।

ये एक बड़ा-सा अलमीरा है जिसमे बहोत सारे सामन रखे हुए हैं कुछ मसाले लग रहे हैं कुछ कॉस्मेटिक लग रहे हैं कुछ खाने के नूडल्स लग रहे हैं।

सामने में ये किसी का हाथ है और उसने अपने हाथ में छोटी-सी फूल रखी हुई है जो कि व्हाइट कलर की है घाना जंगल है ये।

जो की थोड़ी हल्की हल्दिया कलर की है और यह ट्रे एक कढ़ाई के ऊपर रखा हुआ है जो कि बिल्कुल काले रंग का कढ़ाई है।

ये पटैटो है और ये नई पटैटो है और इसके छिलके थोड़े-थोड़े पतले-पतले से है थोड़े उधड़े हुए है।

करीब बारह या पंद्रह चेयर है और साइड में एक अलमारी खड़ा हुआ है और एक बोर्ड बना हुआ है जो ग्रीन कलर का है और पूरा रूम व्हाइट कलर का दिख रहा है।

यहाँ नीचे में मट्टी का पूरा सहेने और साइड में थोड़ा सा ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। चार पांच लोग जा रहे हैं और पांच छे बाइक भी है यहाँ पे ।

अंदर में और भी सारी सब्जियाँ है करेला है ग्रीन कलर का और एक टोकरी में कुछ रखा हुआ है और एक स्टील का टोकरी रखा हुआ है।

दूर में एक इलेक्ट्रिक की खूंटी भी दिख रही है और यहाँ दूर में बहोत सारे गछ हैं जो लंबे लंबे ह --